और ये मूर्ति जिस पत्थर पे रखी हुई है वो पिंक कलर की है और इस मूर्ति के पीछे ग्रिल दिख रहा है जो स्टील का है यहाँ पर आसमान दिख रहे है जो आसमानी कलर का है और पर्पल कलर का है यहाँ पर पेड़ भी दिख रहा है जो ग्रीन रंग का है।